यह एक बहुत अच्छी जगह है और इसके पीछे बोहत अच्छे पहाड़ हैं जो नीले रंग के हैं इसके बीचो-बीच --

सड़क बहुत लम्बी है इसपे दो तीन आदमी आपस में बात कर रहे हैं।

एक कार खड़ी हुई है जो लाल रंग की है। इस सड़क के ऊपर बहोत अच्छे पहाड़ है। उन पहाड़ों से पानी बह रहा है इसके आस-पास की हरियाली भी बहोत अच्छी है।

यहाँ पे एक बहोत अच्छा पहाड़ है उन पहाड़ों से बहोत बहो कई सारे झरने गिर रहे हैं।

और इस सड़क पे कुछ आदमी आपस में बात कर रहे हैं। इसके आस पास बहोत सारी बिल्डिंग है।

जो नीले हरे पीले नीले रंग के हैं इसके इस नदी के अंदर एक बतक है जो पीली और सफेद हैं इसके आस पास बहोत सारी बिल्डिंगे हैं जो सफेद नीली हैं और बहोत ही --

यह एक शोरूम है जो बहुत ही बढ़ा है इसके अंदर ढेर सारी बोरिया है बोरियो के अंदर लहसुन है।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हैजो काफी खूबसूरत है। इस इसके अंदर ढेर सारी लाइटें जल रही हैं इसके आस पड़ोस भी बहुत सारी बिल्डिंग हैं ।

यह दुकान हैजो बोहोत ही अच्छी है इसके अंदर एक छाता लगा हुआ है एक तावा रखा हुआ है कुछ प्याली और कुछ बर्तन रखे हुए हैं।

ऐ यहाँं पे एक आदमी खड़ा हुआ है और एक कुर्शी पड़ी हुई है जो भूरे रंग की है इसके पीछे बहोत बड़े-बड़े पहाड़ है जो भूरे रंग के हैं।

दुकान है जोकि बहुत ही बड़ी और काफी खूबसूरत भी है। इसके अंदर हेलमेट और हारमोनिया और हर चीज मिलती है।

पत्थर पड़े हुए हैं और पानी बह रहा है के आस पास भी पेड़ पौधे बहोत --

इसके बीचों बीच में एक नदी है जिसके ऊपर दो मूर्तियां बनी हुई है।

एक ट्रक है जो नीले रंग की है और काफी बड़ी भी है | इसके बीचों बीच में एक पाइप पड़ी हुई है और एक बाल्टी रखी हुई है।

एक बोहोत बड़ा गार्डन है जो बोहोत ही खूबसूरत है इसके अंदर ढेर सारे पेड़ -पौधे लगे हुए हैं।

इन झरनों के बीचों बीच में बहुत अच्छी हरियाली है और पेड़ पौधे भी काफी लगे हुए हैं। इन इसके बीच में एक मोर है।

इसके बाहर एक खंभा लगा हुआ है। इसके ऊपर ढेर सारे तार लगे हैं जो काले रंग के हैं। इसका किनारा नारंगी और सफेद रंग का है जो ईटों से बना हुआ है। इसके आसपास बहुत सारी हरियाली है।